यह एक जिम लग रही है शायद ये जिम की ओपनिंग है हीया पे बहोत सारे बलून से सजावट किया गया है।

ये एक ग्राउन्ड दिख रहे है दूर-दूर तक बहोत सारे आदमी दिख रहे है एक लड़का पीछे घूम के लाल रंग का टी-शर्ट पहन के है।